अम्म धोती कुर्ता और गमछा लिया हुआ है बहोत सारी घास फूस पड़ी है।

अम्म हम्म डब्बा भी लखा हुआ है उसमें लोग चिठ्ठियाँ डालते हैं लोगों की बहुत भीड़ है अलग अलग कलर के कपड़े पहने है।

में तीन पेड़ हैं रस्सी बंधी हुई है पेड़ बहुत लंबे लंबे हैं घास फूस नहीं है खण्डहर पड़ा है।

ना जानवर है ना कोई इंसान है कुछ नहीं --

सबके मुँह दिख नहीं रहे हैं फेस हाइड है ऊपर से अंदर बिल्कुल वाइट बना हुआ है पेन --

यहां एक बोर्ड लगा है बाहर। उसपे लिंगादो लिखा है।

आकार के आलू हैं इस पे मिट्टी मिट्टी लगी हुई है इसका छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है।

यह एक पहाड़ी इलाका है यहाँ बहुत छोटे छोटे छोटे म दूर तक मकान दिख रहे हैं।

दुकान के आगे डस्टबिन है उसके ऊपर एक पोश्टर लगाया है उसमें रेड कलर पे येलो टिक लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर है रेड कलर के वाइट कलर के पिंक कलर के नीचे शो वाले पेड़ हैं ऊपर से एक --

एक बोोोत बड़ा मोटी डंठल का पेड़ लगा हुआ है।